यह एक फील्ड का दृश्य है जहां पर घर दिखाई दे रहे हैं।

ये लोहे का मदद से गेट को बनाया गया है।

यहां पर बहोत सारे लाइट से सजाया गया है।

में टाइल्स के मदद से अ जमीन मे लगाया गया है।

ऊपर में भी बहुत सारे अलग अलग विंडो हैं।

यहां पे एक बेंच लगाया हुआ है जिस पे एक जेंट्स एवं महिला बैठी हुई है।

यहां पर बहोत सारे जेंस एवं महिला भी दिखाई दे रही है।

इसमें बहोत सारे राखी लटके हुए हैं।

वहां पर लोहे की मदद से ऊपर में कुछ रेलिंग जैसा कुछ बनाया गया है।

यहां पर बहुत सारे लकड़ी का सामान रखे गए हैं।